जीब खड़ी हुई हे काफी सारे पेड़ पोधे हैं।

ये सामने बिल्डिंग हे बिल्डिंग के पास स्विमिंग पूल बना हुआ है।

आस पास पेड़ पोधे हें जमीन पर दो --

ये सामने एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में काफी सारी लाइटे जल रही है खिड़किया भी --

सामने गाडी खड़ी हुई है आस पास पेड़ पोधे है।

कुछ लोग खड़े हुए है पानी गिर रहा है बहत सारे पेड़ पौधे है।

लोग खड़े हुए है सेल्फी खीच रहे है आपस में बात कर रहे है ।

यह एक प पहाड़ है पहाड़ में गुफा सी दी गई है उसके बहार एक आदमी --

इसको फूलो से सजाया गया है कुर्सियां है सामने पोस्टर लगा हुआ है।

और ये एक फैक्ट्री है इसमें काफी सारी मशीनें हैं काफी सारी लाइटें जल रही हैं।

और कुछ टेबल पे रखे हुए काफी सारे डिब्बे हैं।

बस खड़ी हुई है काफी सारे पेड़ पौधे है लाइट जल रही है।

ए_सी लगा हुआ है काफी सारी लाइटे जली हुई है पंखे है काफी सारी लाइटे जली हुई है सामने टी_वि है।

ये सब्जी का ये सब्जी का मार्केट है इसमें काफी सारी सब्जियां है।

जैसे बंद गोभी है टमाटर है।

लैपटॉप हैं रिसेप्शन पे कुछ कागज़ रखे हुए हैं।

ये सामने नदी हे --

कुछ लोग ओरते चल रही है और उनके ऊपर--

ये काफी सारी मशीनें है प्लग है पीछे--

सामने बिल्डिंग है बिल्डिंग के वहाँ काफी सारे ए सि लगे हुए है काफी सारे --

अं बिल्डिंग है ये गाड़ी सजी हुई है ऊपर बोर्ड --